और यहां पे बहुत प्रकार के मछलियां बेचे जाते हैं बचने के लिए लोग आते हैं बेचने हैं मछलियां।

और यहां पे दवाइयां बहुत ही कम दामों में दिया जाता है।

और यहां पे काफी भीड़ होती है लोग आते है यहां पर अपने टैक्स को जमा करने के लिए।